ये कोई कॉफी का स्टोल दिखा रखा है।

चार बोटल और एक गिलास रखा हुआ है।

यहां पे बहोत सारी लाइट्स वगैराह भी लगी हुई है सीलिंग पे और यहां पे कुछ चेयर वगैराह भी रखी है।

और जिम में जो मशीन्स होती हैं वेटलिफ्टिंग या फिर जो भी एक्सरसाइज मशीन हैं वो यहां दिखा रखी हैं।

यह किसी होटल की रेस्टोरेंट की फोटो दिखा रखी है। जहां पे खाना खाने के लिए टेबल्स लगा रखी है।

ये एक ढाबे की फोटो है ओ दिखा रखी है।

बहोत सारे बैलून से वह लगा रखे है।

और यहां पे एक पाथ वे जैसा कुछ बना रखा है।

और यहां पे पेड़ ही पेड़ है।

और ये सबसे पहले तो ये बैग्स वगैरा दिखा रखे हैं लड़कियों के लिए हैंड बैग --

और इसमें लाइट्स वगैरा भी हैं और ये लड़कियों के कपड़े और ये कंबल ब्लैंकेट वगैरा भी दिखा रखे हैं और इसके आगे सु--

अमरूद केला संतरा और भी बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं और ये अंकल भी दिखा रखे हैं।

ओर यहां कुछ मशीन वगैरह भी रखी हुई हैं।

कुत्तों के लिए बेल्ट वगैरा मिलते हैं। पट्टे जो उनके गले में डालते हैं वो।